और इस पुल पे अ बहोत सारे आदमी और कुछ औरतें भी हैं जोकि इस पे चढ़के जा रही हैं।

फिल्ड है और इस फिल्ड में शादियों की सजावटें के लिए अ सजावट की गई है।

और इस अलमारीयो में बहोत सारे कॉपी किताब--

चारों तरफ बड़ी बड़ी ईंटों से रेलिंग की गई है और यहां पे एक बड़ा सा सफेद कलर का--

सफेद कलर के बाउंड्री की गई है।

बाइके खड़े हैं और कुछ यहां लोगों को बैठने के लिए--